लड़के लोग यहां पर बहोत सारे जिम कर रहे है।

यहां पर दो बच्चे लोग डांस कर रहे हैं।

नीचे टाइल्स लगा हुआ है ऊपर बैलून है।

इसके हाथ में फोन है बड़ा फोन है।

और यहां पर छोटा छोटा अलमारी बनाया हुआ है।

इसमें वाल पुट्टी से पेंट किया हुआ है और तीन डब्बा भी यहां पर है।

इसमें लिखा हुआ है ऊपर पधारो जी अतिथि भवन।

अंदर भी दो रूम है।

यहां पर ऊपर पंखा लगा हुआ है।

और लग रहे हैं यहां पर कुछ प्रोग्राम हो रहे है।

सामने एक मंदिर दिख रहा है।

यहां पर एक बगीचा है जिसमें बहुत ही हरा भरा पेड़ पौधा लगाया हुआ है।

कपड़े का दुकान है जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं।

और इधर एक जेंट्स है जो खड़ा है सबको देख रहा है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है जिसके अगल बगल बहुत सारे लोग हैं ।

और अंदर में बहोत सारे लोग काम करते दिख रहे हैं।

डॉक्टर प्रियंका गुप्ता का जो इमजेंसी हॉस्पिटल है जो दिखाई दे रहा है।

यहां पर क्रिसमस डे का प्रोग्राम हो रहा है।

व्हाइट कलर रेड कलर हरा कलर बैलून से और यहां पर तारा भी है एक--

और नंबर प्लेट दुकान में एक आदमी बैठा है।